और यहां कई सारे लोग बेठा हुआ है चेयर पर--

एक लड़का बैठा हुआ है चेयर पर।

यह चित्र एक दुकान का है इस चित्र में लैपटॉप रखा हुआ है बहुत सारा।

और इस चित्तर में बहुत सारा लाइट ऊपर में लगाया हुआ है।

और इस चित्र में पीछे एक बहुत सारा घर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है।

इस चित्तर एक मंदिर का है।

यह चित्र एक गांव का है।

इस चित्र में पानी दिखाई दे रहा है और इस चित्र में कई सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

और इस चित्र में एक मछली पकड़ रहा है।

यह चित्र एक जगह जिसमे घर बनाया जा रहा हैं इस चित्र में पत्थर दिखाई दे रहा हैं।

और इस चित्र में दो लंबा लंबा पोस लगाया दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक ए_टी_एम का है।

और इस चित्र में भालू भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

ओइया लड़की हाथ में कुछ रंग लगाया हुआ है।

और यह छते मे लाइट बल्ब दिखाई दे रहा है।